यहां पर मुझे चार कुर्सी दो मेज दिख रही है।

अ टेप भी रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारे लड़के या लड़कियां खड़े हुए हैं।

लड़कियां काम कर रही है और यहां पर लाइट बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

और कुछ लाल रंग की कुर्सी रखी हुई हैं।

ये एक खंभे पर बहुत सारी लाइटे लग रही है और खूब बहोत सारी टेबल रखी हुई है।

और नीचे सोफे भी रखे हुए हैं।

कुछ लड़के इनको बैठ के देख रहे है।

और यहां पर बहुत सारी पेंटिंगे लगी हुई हैं।

उस पे एक लड़की की तस्वीर है उसके ऊपर एक भी रखी हुई है।